ये सेलोन है मतलब जैसे गर्ललल्ल गर्ल्स पार्लर ऐसे यही बॉयज पार्लर है यहाँ पे लड़का अपनी पेशियर कराने भी आए तो उसका फेशियल वर्कर ने कर दिया है।